जो की ब्राउन पिंक कलर की है।

उसी के पास में हमें एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

और हमें यहाँ पर चढाव दिखाई दे रहें हैं जहाँ पर ब्लू और वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं।

और स्टेज भी लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

आगे की तरफ छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।

दूबा हमें दिखाई दे रही है ऊपर आसमान हमें दिखाई दे रहा है और धुप भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।

जहाँ पर एक लड़का डंडे के ओ डंडे को पकड़े हुए है।

और लोहे की खिडक़िया हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर एक लड़की चश्मा पहनें है और एक टी-शर्ट और ब्लैक कलर का चड्डा सामने की तरफ हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पिंक और वाइट कलर से डेकोरेशन किया गया है

सामने की तरफ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।